हेलो गाइस यहां देखिए कि यहां कुछ पहाड़ भी दिखाई दे रहा है इसके नीचे --

ट्रैक्टर ट्रैक्टर दिख रहा है पीछे एक ट्रॉली भी है। वहाँ पे एक ऊपर मूर्ति भी रखी हुई है।

हेलो गाइज ! यहां देखिये कि यहां पर कुछ आदमी नज़र आ रहे है। यहां पर एक बैंक भी दिखाई है। इधर उधर --

हेलो गाइस यह देखिये कि यहाँं पर तीन लोग हैं वे आपस में बात चित कर रहे हैं।

यहाँ पे कुछ दीवाल भी लगी हुई हैं। यहाँ नीचे कुछ टाइल्स सी दिख रही हैं।

हेलो गाइस यहाँ देखिये कि यह एक समूह बढ़िया है उसमें कुछ आदमी भी हैं और औरत भी हैं। कुछ ऊपर भी हैं।

और दिख रही है और वहाँ कुछ मिस्त्री दिख रही हैं।